मुझे इस फोटो में एक खंबा दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में बहुत सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में एक किला दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में टायर दिखाई दे रहा है।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

मुझे इस फोटो में एक कार दिखाई दे रही हैं। मुझे इस--

मुझे इस फोटो में मच्छी दिखा--

मुझे इस फोटो में बहोत सारे टायर दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में गेम जोन दिखाई दे रहा हैं मुझे--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

मुझे ये फोटो में दो दुकाने दिखाई दे रही है।

एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे गमले दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में बहुत सारी मछलियां दिखाई दे रही हैं मुझे इस फोटो में पानी की बोतल दिखाई--